ये एक दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पे इनके पास बहुत सारे मोबाइल एक्सेसरीज दिखाई दे रहे हैं।

यहां रंग बिरंगे पौधे हैं हरे हरे पौधे हैं।

ये एक बुक स्टॉल दिखाई दे रहा है और यहाँ बुक स्टॉल के अंदर एक लड़का दिखाई दे रहा है।

इनके यहां बहोत सारे बुक्स हैं। पेन पेंसिल शापनर रबर के बहोत पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक चेयर है टेबल है टेबल के ऊपर बहोत सारे बुक्स है।

यहां एक डायरी दिखाई दे रही है और इसका नाम है अनमोल डायरी ।

छोटी सी सड़क है बड़े बड़े पेड़ है आसमान बादल दिखाई दे रहा है।

अरोरा डेंटल क्लिनिक और ये एक डेंटलक्लीनिक है।

और यहाँ बड़े पेड़ मिट्टी दिखाई दे रही है आसमान बादल दिखाई दे रहे हैं।

स्विमिंग पूल है सीढ़ियाँ हैं बिजली का खंबा है आसमान बादल दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारे कुशन कवर दिखाई दे रहे हैं यहां टी_वी है।

कचड़ा कूड़ा दिखाई दे रहा है और यहां हरे हरे घास है यहां कुछ पेपर्स प्लास्टिक दिखाई दे रहे है।

यहां पे खिड़कियों का ग्रिल काले रंग का है और यहां पे पेंट ब्राउन रंग का हैं।

यहां पे टाइल्स है और यहां बहोत सारे विंडोज़ भी हैं।

यहां पे कांटेक्ट नंबर भी दिखाई दे रहा है और यहां बहोत सारे गाड़ियां है बड़ा गेट है शटर है दुकान है सड़क है।

यहां पे एक बगीचा दिखाई दे रहा है बगीचे में बहोत सारे--

और यहां पे छोटे छोटे घांस भी दिखाई दे रही है।

यहां पे छोटे छोटे घास हैं बड़े पेड़ हैं यहां बोर्ड है।

और यहां पे गोल्डन वाइट ब्लू रेड ब्लैक के बैलून दिखाएं दे रहे हैं।

यहां पे घास है घास में थोड़ा पानी है।

यहां पे एक बड़ा सा स्कूल दिखाई दे रहा है। ये एक पब्लिक स्कूल है और यहां पे बहोत सारे स्कूल वेंस दिखाई दे रहे हैं।

ये एक शॉप दिखाई दे रही है और ये एक किड्स शॉप है टॉयज दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे।

और यहाँ पे एक कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही है यहाँ सड़क है यहाँ एक क्लॉक टॉवर दिखाई दे रहा है।

और ये कार का रिपेयर चल रहा है यहां पे बहोत सारे चेंज दिखाई दे रहे हैं।